इंडियन जमीन पर रखी हुई है मकान के फोटो अभी अभी कैसे लाए हैं।

यहां पर बहोत सारे पत्थरे दिख रहे है और पथरो के सबसे--